इसपे वाइट कलर का एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

उसमें टेबल कुर्सियां भी लगी हुई हैं और साइड में सोफा भी लगा हुआ है।

पेट्रोल पंप पे काफी सारी कारें भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने मकान का दरवाजा बंद पड़ा हुआ है।

एक आदमी व्हाइट कलर की कार की सर्विस करता हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें एक बड़ा सारा गार्डन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें एक मंदिर और उसमें सीढ़ियां भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं।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

इसमें एक किताब की दुकान बनी हुई दिखाई दे रही है।

श्री श्याम बुक डिपो का बोर्ड भी लगा हुआ है राजा वनवीर सीरीज का बोर्ड भी लगा हुआ है।

बिल्डिंग में काफी सारी कांच की खिड़कियां भी बनी हुई है।

इसमें एक खेल का बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

मैदान में दो बड़ी बड़ी व्हाइट कलर की लाइटें भी चमक रही है।

इसमें पानी का बड़ा सा कुंड बना हुआ दिखाई दे रहा है।

पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आस पास कोई भी आदमी या औरत दिखाई नहीं दे रहे हैं।

काफी सारा सामान भी रखा हुआ है साइड में लाल कलर की कुर्सियां भी रखी हुई हैं।